इसमें कुछ बाइक के भी खड़े हुए हैं।

जिसमें से कुछ ब्लैक रंग की है।

और यह इसमें एक ही व्यक्ति नजर आ रहा है।

इसके सामने एक बड़ा मिरर भी लगा हुआ है।

कुछ लोग बैंक की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें बहुत सारे अनाज रखे हुए हैं।

यहां पर पानी का कैंपर भी रखा हुआ है।

दिखाई गई इमेज में बहुत सारे टीमाटर रखे हुए हैं।

यहां पर एक अ घास भी खड़ी हुई है।

बाईके के हैंडल के ऊपर हेलमेट रखा हुआ है।

यह एक होटल डेजर्ट किंग है यानी कि यहां पर बहुत सारे ट्रैवलर लोग आकर अपनी भूख मिटाते हैं।

और रेस्ट करते हैं और रूम बुक करके अपने आराम फरमाते हैं।

यहां पर एक आदमी भी उसके साइड में बैठा हुआ है।

जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक --

लड़का सभी पौधों को पानी दे रहा है।

जहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही हैं जिसमें से--

इसमें में टमाटर के पौधे लगे हुए हैं।

हरा घास खड़ी हुई है यहां पर कुछ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

जिसमें हमें पिच दिखाई गई है।

यहां पर बहुत सारे लोग फूल तोड़ रहे हैं जिसमें से कुछ--